ओर फोर हम त छोटू छोटी छोटी हरी हरी घास दिखेण लगीं। भीमल भीमल का डाला की लटुनि दिखेण लगीं। सामणी हम त तीन खम्बा दिखेण लगीं जूम बिटिन तार एक खम्बा बिटि हखा खम्बा हखा खम्बा बिटि भी हखा खम्बा पर जयुं।